मंदिर के प्रांगण में बहुत से आदमी जमावड़ा है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल का फोटो है। दिवाल सादा कलर का है इसमें पुट्टी किया हुआ है और मोटा मोटा बिम है ।

उसके बगल मे मैदा का अ गुदिया साना हुआ है। उसके बगल मे सॉस भी रखा हुआ है।

सामने में शीशा लगा हुआ है शीशे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है लाल शर्ट पहन के उसके बगल में एक आदमी खड़ा है।

एक मंदिर जैसा गुंबज बना हुआ है उसमें शिवजी का फोटो है।

यह एक कोई इंस्टिट्यूट का फोटो है इंस्टिट्यूट का दरवाजा बंद है लेकिन हार से पार दिखाई पड़ रहा है।

और बगल में सादा दिवाल है पिलर में उसमें लिखा हुआ है रंजिता निवास।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग का फोटो है बिल्डिंग के सामने में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिख रहा हैंदरवाजे के ऊपर में बंधन बैंक का बोर्ड लगा हुआ हैं।

उसके सामने में एक फल का ठेला लगा हुआ है।

मूर्ति दिखाई पड़ रहा है जो चारो साइड से गिरा हुआ है।

यह एक कोई मेले के द्वारा का फोटो है उसमें गेट बना हुआ है।

बहार हमें बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड मे फिश ट्रैक लिखा हुआ है।

यह एक कोई ढाबे का फोटो है। ढाबा अह पक्का का मकाम दिखाई पड़ रहा है।

बगल में एक लडिज है। अह लेडीज के सामने में एक खाली डब्बा पड़ा हुआ है।

यह एक कोई दुकान का फोटो है दुकान के सामने में करकट के ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे बीच में लिखा हुआ है गिन्नी किराना स्टोर ।

हैंगर में बहुत तरह तरह के कपड़े टांगे हुए है और रूफ रूम लाइट से भरा हुआ है।

पान सौ निन्यानवे आठ सौ निन्यानवे का बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह एक दो मंजिला मकान का फोटो है। इस दो मंजिला मकान में चार झलने दिखाई पड़ रहे हैं।

चार बोर्ड लगे हुए हैं सब से ऊपर में राव लाइब्रेरी है।

एक सामने में पुल बना हुआ है पूल के बगल में एक बहुत बड़ा लाइट का टावर भी है और हरी हरी घास है।

बहुत से आदमी और लेडिस लोग बैठी हुई है और कुछ लोग खा रहे है।

सुर्ज लाल है डूबता हुआ दिख रहा है आसमान हल्का हल्का लाल दिखाई पड़ रहा है।

यह एक कोई पैथोलॉजी का फोटो है पैथोलॉजी के अंदर दो लेडीज बैठी हुई है।

और इसके बगल में एक मुरुत है जो दिखने में अच्छा लगता है और लाइट भी है यहां--

बगल मे चार बंबू लेके और ऊपर मे एक तिरपाल है और ये आगे बढ़ रहा है।

जो इसके बीच में दीवाल में भी लाइट लगा हुआ है दिखने में अच्छा लगता है।